स्टेज पर पिंक और सफेद कलर का डेकोरेशन किया गया है।

सोफे के ऊपर एक चादर रखी हुई है।

गैरेज का नाम साईं राज गैरेज है।

दुकान के अंदर काफी सारा सलून व पार्लर का आइटम रखा हुआ है।

इस फोटो में एक पार्क दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

इस फोटो में एक जंगल दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग बस का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं बस स्टैंड पर कुछ चेयर्स भी लगी हुई है।